यह एक छत है। यहाँ पर बहुत ही सारे आदमी भी यहाँ पर सेंट्रिंग किया गया है। इसके पर बहुत ही आदमी छड़ लगाये गए है।

और एक भैया साहब यहाँ पर ढोलक बजा रहे है। यहाँ पर बहुत ही सारे कुर्सी भी लगाये गए --